कई लोग खरे रहे हैं कई लोग बैठे हुए खाना खा रहे हैं।

इसके बाद जो पेड़ है इसके बाद जो एक बोर्ड लिखा हुआ है अंग्रेजी में डेवलपमेंट अथॉरिटी और हिंदी में--

और यहां पे समोसा और पूरी सबको बेच रहा है।

बस के बाजू बहोत सारे लोग दिखाई दे रहे--